अअ स्टॉल लगा हुआ है और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर।

एक यहाँ पर बड़ा सा ब्लैक कलर का गाड़ी दिख रहा है जो कि--

यहाँ पर एक बड़ा सा लेक दिख रहा है अअ जो की जिसका पानी यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है।

अ मुझे जहाँ तक लगता है ये एक अ अ पेट शॉप है।

ये एक अ एस_एन_एस ऑटोमोबाइल्स का दुकान है।

यहाँ पर एक आ पेट्रोल पंप दिख रहा है और यहाँ पर बहोत सारे ऑटो बाइक्स ये सब दिख रहे हैं अ--

और ये बीच अ मैन रोड दिख रहा है ये अ रोड के सामने ये पेट्रोल पंप है पीछे पेट्रोल पंप के पीछे बहोत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है।

और अ सामने में अ दो साइड में मिरर लगा हुआ है सामने में और--

और बैलून से सजाया हुआ है अ शायद रिपब्लिक डे या फिर फिफ्टीन अगस्ट का कांसेप्ट से ऑरेंज वाइट और ग्रीन बैलून से सजाया हुआ है।

बजार टाइप का समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ-कुछ अ फल का दुकान है कुछ सब्जियों का दुकान दिख रहा है ठेला टाइप का जो वो लगता है अ --

उठाया गया है यहाँ पर कुछ-कुछ काम चल रहा है कुछ टायर्स कुछ--

और न्यू गाड़ी समझ में आ रहा है ए_सी है मतलब ए_सी गाड़ी है पर्दे वर्दे दिए हुए हैं।

अपार्टमेंट है अ कॉम्प्लेक्स टेज नारायण कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है सामने में।

यहाँ पे कैंडिल बहोत साला जलाया हुआ है और बहोत सारे लोग यहाँ पे बैठ के प्रेयर कर रहे हैं।

और उसके सामने में बरा-बरा सा सिलिंडर टाइप का जो है वो दिख रहा है।

ये एक चर्च समझ में आ रहा है चर्च है जहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है गाने का।